यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है एक महिला नज़र आ रही है दो व्यक्ति नज़र आ रहे है।

ब्रिज नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा है पत्थर दिखाई दे रहा है सड़क नजर आ रही है।

कुछ पोस्टर लगे हुए है लाइटे लगी हुई है पो पेड़ पौधे लगे हुए है और कुछ लोग पैसे निकाल र--